इस फोटो में हमें एक फल का दुकान दिख रहा है जिसमें एक--

इस फोटो में हमें क्रिकेट का मैदान दिख रहा है जिसमें कुछ छोटे-छोटे घास उगे दिख रहे है और बहोत सारे आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं और बहोत सारे बैठने के सीट वगैरह है।

वाले देखे जा रहे हैं उसम कुछ बोर्ड वाले बड़े-बड़े लाइट्स वाले दिख रहे हैं।

खाने के कॉफी चाय के फोटो व दिए हुए हैं।

इस फोटो हम एक दुकान दिख रहा है जिसके बाहर टेबल में बहुत सारे चीज रखे हुए हैं।

अत्तार वघेरे बिछा हुआ है जो रेड और येलो कलर के है उसके--

इस फोटो में हमें एक कॉलेज दिख रहा है इसमें बहुत सारे लड़का-लड़के खड़े हैं।

कुछ पेड़ वगैरह है कुछ छोटे-छोटे पत्थर व दिख रहे हैं कुछ बड़े पत्थर वगैरह भी है।

गेट दिख रहा है जो ब्लैक- ब्लैक कलर के हैं और कुछ सोफे रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं नीचे।

बना हुआ है और एक क्लॉक दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

आच वगैरह है जिसमें कुछ सूखे पत्ते लगे हुए हैं कुछ टेनी वगैरह है जो टूटे गिरे हुए हैं‍।

वगैर है जो रेड करके एक लेडीज पूरे वाइट कर के कपड़े में दिख रही है।

तीन आदमी खड़े दिख रहे हैं एक ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक करल का जींस व्हाइट कलर का--

कुछ गोल टाइप के लोहे कंबे वघेरे हैं जिसके ऊपर--

एक बाहर स्टैचू दिख रहा है जो रेड कलर का है उसमें कुछ प्लास्टिक के सेंटर में लगे हुए हैं बाहर कुछ--

जो लोहे का बना हुआ है। कुछ बड़े-बड़े पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। कुछ पाइप वगैरह दिख रहे हैं कुछ पेड़ है।